लेकिन इस टाइम प्रतियोगिता बंद है इसलिए सभी लोग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

यह एक साइकिल के दुकान है जहां पर बहोत सारी साइकिल रखी हुई है और एक व्यक्ति एक साइकिल को--